इस तस्वीर में हम देख रहे हैं यहां एक जिम है जिसमें कई सारे काले रंग के डंबल रखे हैं दो पंखे हैं हेलो--

चार पांच दुकानें हैं इनवर्टर है स्पीड और हरे रंग का ग्रिल है जिस पर रंग काला चार पांच दुकानें हैं इनवर्टर है स्पीड और हरे रंग का ग्रिल है